यहाँ बहुत सारी महिलाएं खड़ी है सभी अपने-अपने यूनिफार्म पेहेन कर खड़ी हैं यह एक बहुत सुंदर विद्यालय के समान दिख रहा है और सभी ने --

यह एक छठ पूजा का घाट है यहाँ पर सभी छठ करने वाली माताएं और बहने खड़ी हैं बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

यह एक लाइब्रेरी मे खड़े है इसने एक किताब पकड़ी है जिसमे वॉर लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारी किताबें दिख रही हैं यह एक वृद्ध व्यक्ति है इसने हाथ में घड़ी डाली हुई है।

यह एक अनमोल नाम की उम्म दुकान है और यह एक टेलर की दुकान है उसके बाहर तीन बच्चे और एक बच्ची --

बहुत सारे बच्चे जमीन पर बैठकर अपने हाथ का कला प्रदर्शन करते हुए बहुत सी चीजें बना रहे है।